कुर्सियां नजर आ रही है और काफी सारे लाइटे नजर आ रहे हैं और काफी सारे टाइल्स मार्बल बिठाए हुए हैं।

यह घर में काफी सारे दीवाल में विभिन्न कलर के कलर से सजाए गए हैं और यह घर के सामने एक पेड़--

और कुछ व्यक्ति फोन में भी लगे हुए है और कुछ व्यक्ति पैदल चल चल रहे हैं।

यह एक घर है घर के दीवाल में बहुत सारे गुब्बारे भी है।

वह घर भी नजर आ रहे हैं बहुत सारे फूल काफी पेड़ नजर आ रहे हैं काफी सारे फूल कभी पेड़ नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति फोटो भी खींचते हुए नजर आ रहे हैं।

काफी सारे इसमें सामान नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति टी_वी की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं।

काफी सारे अलग अलग पेड़ नजर आ रहे हैं यहां पे एक व्यक्ति पानी देते हुए नजर आ रहे हैं।

सीढ़ी भी नजर आ रहे हैं दूसरे ओर एक व्यक्ति उधर भी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं।

और शटर के बगल में भी एक टीन का गेट लगा हुआ है।